व्हाइट कलर की बहुत बड़ी दीवाल भी है एंड हल्की हल्की धूप है जिसकी वजह से और भी प्यारा आ रहा है एंड नीचे हरे कलर की घास फूस भी है जो की आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डेकोरेशन भी किया गया है।

हैल्लो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं। ये शादी का व्यू है। जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। एंड आप बीच में देख सकते हैं। एक लड़का है।

बिच में आप एक बहुत ही प्यारा सा स्टेच्यू देख रहे हैं। जो कि वो बैठा हुआ है और कुछ मंजे के साथ में बैठा हुआ है। जो कि बहुत ही प्यारा मंजे का डेकोरेशन किया गया है।

हैलो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक स्टेज का व्यू है जो कि बहोत ही प्यारा डेकोरेशन किया गया है एंड लाइट पिंक कलर के फ्लावर्स से भी डेकोरेशन है जो कि बहोत प्यारा लग रहा है और बीच में सोफे भी रखे हैं।

हैलो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बड़ा सा घर है उसको डेकोरेट किया गया है।

एक बड़ा सा सोफा है जो बीच में बोहत प्यारा सा शो हो रहा है।